यहाँ पे बोहत सारे नन्हे मुँहे बच्चे बाइटे है जो अपना।

यहाँ एक मंदिर है जहां पे बोहत सारे लोग पूजा पाट करने के लिए आते है।

यहाँ पर बोहत सारे बुजुर्ग बाइठे हुए है। और--

और यहाँ का साफ सफाई बहुत ही अच्छा है आप भी यहाँ घूमने आ सकते हैं ।

ये चार छात्रा जो की अपने इन नन्हे मूनहे हाथों से बहुत ही अच्छे ढंग से पेंटिंग किए हुए है।